इस फोटो में दिखाया है कि यहां पर एक बड़ी सी नीली टंकी है।

एक बड़ी सी सीट है लोहे की एक आदमी आगे साइ यहां पर आ रहा--

यहां पर एक एस_बी_आई ए_टी_एम है।

इस फोटो में दिखाया गया है।

यहां पर एक कमरे का निर्माण हो रहा है।

इस फोटो में दिखा है कि यहां पर एक--

इस फोटो में दिखाया गया है कि--

रोड के किनारे पर यहां एक होटल बना हुआ हैं।

एक घर बना हुआ है जिसके बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है।

यहां पर एक सफेद रंग का टेबल है जिसके ऊपर कुछ औजार रखे हुए हैं।

एक पानी की बोतल रखी है।

ग्लो शाइन टोन यहां पर लेडीजों का ब्यूटी पार्लर है।

यहां पर एक सफेद रंग का टेबल है जिसके ऊपर यहां पर सात ट्रॉफी रखी हुई है।

और यहां पर कुछ बलूंस लगाए गए हैं पीछे एक बैनर लगा हुआ है।

यहाँ पर एक बड़ी सी दुकान है दुकान के आगे अपोलो टायर्स लिखा हुआ है।

यहां पर एक गाड़ी सफेद रंग की खड़ी हुई है।

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर--

यहां पर शादी का प्रोग्राम हुआ था।

इस फोटो में दिखाया गया है --

यहां पर बड़े बड़े खंबे दिखाई दिए हैं।

सफेद रंग की बड़ी सी दीवार है जिसके बीच में--

यहां बाहर की तरफ एक लाल रंग का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और दुकान पर लिखा है--

दिखाया गया है कि यहां पर एक दीवार है जिसके पास या--

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर एक कांच का बड़ा सा टेबल है।